मुझे इस फोटो में सामने कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

शोरूम के बोर्ड पर मुझे मारुति सुजुकी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और मुझे वान्य कार स्पा एंड व्हील केयर लिखा हुआ दिख रहा हैं।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है दुकान के बोर्ड पर ओम ट्रेडर्स टाइल्स एंड --

यह दुकान मुझे कपड़े की दिखाई दे रही है।

हॉस्पिटल पर सामने मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे बोर्ड पर फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह सामान मुझे फूलों से सजा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक दुकान दिखाई दे रही है।

सामने मुझे शुभकामना आभूषण लिखा हुआ दिख रहा है।

महिलाएं मुझे बैठे हुए नजर आ रही हैं।

सामने मुझे एक स्कूटर खड़ा नजर आ रहा है।